और इस गाड़ी में बहुत सारा आदमी बैठा हुआ है और वहाँ बगल में पेड़ है ताड़ के और यहाँ आदमी लाल कपड़ा पहनले है गुलाबी है पीला है हरा है और नीला भी है और यहाँ बड़का गाड़ी भी --

यहाँ पूल है बहुत बड़ा सा पूल है और पूल के नीचे पानी है |

यहाँ साइकिल है मोटरसाइकिल है।